slide shows पूर्ण computer screen लेता है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
slide shows केवल प्रदर्शन के लिए हैं
प्रस्तुति sampleimpress odp खोलें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
यह आपको अगली slide पर ले जायेगा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
slide show dialog box प्रदर्शित होता है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
slide transitions क्या हैं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
slide 1 चुनें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
slides पुनः व्यवस्थित हो गयी हैं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
slide sorter view से पहली slide चुनें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
अब transition में ध्वनि set करें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
इसी तरह दूसरी slide चुनें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
play पर click करें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
transition type में checkerboard down चुनें
speed dropdown में medium चुनें
sound dropdown से gong चुनें
loop until next sound check करें
radio button automatically after पर click करें
समय 1sec चुनें
apply to all slides पर click करें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
दूसरी slide चुनें
task pane पर जाएँ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
main main से तीसरी slide चुनें
task pane पर जाएँ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
यहाँ आपके लिए एक नियतकार्य है
एक नयी प्रस्तुति बनाएँ
एक पहिया दक्षिणावर्त जोड़ें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
एक automatic slide show बनाएँ